यहां पे मैं देख पा रही हूं कि ये एक रूम में डबल बेड है।

जहां पे बॉयज खेल रहे हैं।

और यहां पब्लिक बैठी हुई है तंबू के अंदर जो व्हाइट कलर का तंबू है।

खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर की पैंट पेहनी हुई है व्हाइट और ब्लैक कलर की शर्ट पेहनी हुई है साइड में उसके रेड कलर की टी शर्ट में सामने एक अंकल जा रहे हैं।

ये बिजली का ट्रांसफारम ट्रांसफॉर्म बना हुआ है एक गाड़ी खड़ी है सामने एक लड़का खड़ा हुआ है।

खाने की चीजे टंगी हुई जैसे भुजिया नमकीन वगैरा--

जो स्पॉट सेंशन चढ़ सकता है।

ये मैं देख पा रही हूं ये किसी चीज का ऑफिस है जहां पे एक डेस्कटॉप है। पीछे बोर्ड पे लगा हुआ कि किस चीज का क्या डिजाइन करा गया है।

यहां पे मैं देख पा रही हूं ये एयरपोर्ट का सीन है जहां पे एक प्लेन दिखाया गया है और ये साथ में ब्लू कलर का कोई कंटेनर वगैरा है।

और ये रेड कलर का कॉन मतलब दिवारें बनाई गई हैं और ये समान रखा हुआ है जिम करने का।

ये एक ऑरेंज कलर में है एक येलो कलर में है और एक ब्लैक कलर में है।

जा रहे है स्टेज पर और उसे पर नाम लिखा गया है जिम खाना क्लब --

देवभोग शुद्ध भोजनालय का ढाबा होगा यहां पे कोई।

यहां पे मैं देख पा रही हूं ये एक गाड़ी खड़ी है।

जिसमें पी_बी जीरो वन ऐट फाइव फोर डबल सेवन इसका नंबर है वहीं साइड में मूंछ का निशान दिया गया है।